देख सकते हैं गॉड ऑफ इश्यू जिन्हें हम बोलते है भगवान --

हर किसी की बस की बात नहीं होती और यह शोरूम एक--